काले रंग का घोड़ा दिखाई दे रहा है।

गोल्ड का प्रोडक्ट दिखाइ दे रहा है वे प्लैटिनम येलो मास्क के ए वे--

व एक ड्रैगन भी दिखाई दे रहा है।

होली खेलने की दिखाई दे रही है यहां पर अ ब छह लड़के दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक लाइट भी नजर आ रही है।

यहां पर पीले रंग के कट्टे नजर आ रहे हैं।

वह यहां पर तीन लैम्प दिखाई दे रहे हैं।

यहां पीछे एक फायर एक्टिंग्विश नजर आ रहा है।

यह तस्वीर चर्च की नजर आ रही है व यहां पर बहुत सारे बच्चे और महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

साथ में ही बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर मुझे एक मंदिर की दिखाई दे रही है जिसके गेट पर ओम बना नजर आ रहा है।

और यहां पर नीचे स्टील पर आस्था लिखा हुआ है।

इसके बीच में छेद हो रखा है वै साथ में ये जमीन पर पड़े हैं इनकी मात्रा बहोत ज्यादा है।

मेज का रंग लाइट पीच कलर दिखाई दे रहा है आदमी ने नीली पैं--

यह तस्वीर एक अ स स--

वे यहां पर दो गेट भी नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक रिसॉर्ट की नजर आ रही है।

यहां पर एक लाल और हरे रंग की प्रेस दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक घर की नजर आ रही है।

इस तस्वीर के अं बाहर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

वाटर कूलर रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन वे सर्विस सफलतापूर्वक की जाती है।